होटल की है जिसपर टेबल पर गिलाश रखा हुआ है।

इसमें गणेश जी लक्ष्मी जी और भी भगवान की फोटोस रखी हुई है।

यह इमेज सैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स शॉप की है।

हुई है एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहोत सारे बच्चे खेल की प्रैक्टिस करते दिखाई दे रही है।

जिसके बाहे गा दो बाइक --

इस इमेज में सोफे दिखाई दे रहें हैं।

फोटो नजर आ रही है बहोत सारी चेयर्स दिखाई दे रही है।

यह इमेज पावर माइंड इंस्टीट्यूट --

यह इमेज एक कैफे कि है जिसमें--

टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है गार्डन के बीच में।

इस इमेज में बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई--

बाहर पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

कुछ व्यक्ति बाहर आ जा रहे है कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए --